यहाँ कुछ गोल बड़े डब्बे रखे हैं जिनमे भी छोटे-छोटे पौधे उग रहे हैं।

यहाँ पर कुछ फूलदान है जिनका रंग सफेद है उसमें भी फूल लगे है।

एक गु बैंगनी और ग्रे है एक हरा पीला लाल ग्रे गुलाबी सभी रंगों को मिलकर बना है।

जिसमें दो क्रिकेट की पिच बनी हुई है। यहाँ पर कुछ अन्दर लोग खेल रहें हैं। यहाँ बाहर की और उनके बैग रखे हुए हैं।

यहाँ पर हरे रंग की लाइटें लगी हुई है। साइड में लाल रंग का कुछ टंगा हुआ है। यहाँ पर ऊपर से बिजली का वायर जाता हुआ दिख रहा है।